जो एक कांच की अलमारी में रखे हैं।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

आसमान में हमें काफी सारे बादल दिखाई दे रहें हैं।

तालाब का पानी बिल्कुल साफ हैं।